यहां पर एक नाई की दुकान है वहां--

पंखा भी लगा हुआ है।

यहां इस तस्वीर मे एक होंडा कंपनी दिखाई ग--

यहां इस तस्वीर में एक गोडाउन दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक डॉक्टर और एक मरीज दिखाया गया है।

उनके चारों ओर बहोत ही अच्छी सजावट--

यहां पर एक टायर की दुकान है।

एंड की मेकर्स है वेह कारों और--

और उसके साथ में ही वृक्ष--

यहां इस तस्वीर में--

यहां पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल --

यहां पर अलग अलग रंग के हैं।